ये ऑफिस के साइड में ठेले वाले लगें हैं गरीब लोग है जो कुछ खरीद रहें हैं बेच रहें हैं।

गाँव में चार पाँच लड़के नजर आ रहे है जो मैच वगेरा खेल रहे है और सब दूर दूर खड़े है यहाँ जाली लगी हुई है ग्रीन कलर की और यहाँ पर बड़े -बड़े पेड़ लगे है।

बुक की शॉप है यहाँ पे रैंक में बहुत सारी बुक राखी हुई है दो जेन्स बैठे है बुकसो पर बैठे है।